ये एक बहुत सुंदर स्टेज बनाई हुई है।

ये एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है और उसका मुफ्ती शोरूम का नाम है और ऊपर साथ ही बहुत ही और भी --

पढ़ा हुआ है बहोत ही अच्छा लग रहा है आसमान काफी यहां पर सुंदर तरीके से बनाया हुआ है।

यह एक सामने लड़का खड़ा हैं और पे गेट सामने दिख रहा है गेट बहोत ही सुंदर है।

और टेबल पे बहुत सुंदर लाइट्स लगाई हुई हैं और काफी सुंदर लग रहा है।

और बहोत ही सुंदर यहां पे लग रहा है।

और सामने दिख रहा है काफी अच्छा यहां पे--

नेहेर बहुत ही बड़ी है बड़े बड़े वृक्ष लगे हुए हैं।

बहोत सुंदर सुंदर सोफे लगाए हुए है पंखा लगा हुआ है ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां भी बनाई गई है। बहोत ही सुंदर--

ये एक बहुत बड़ी जिम है जिम में बहुत ही अच्छे से यहां जो कि--

तार लगाए हुए है बट टेबल चेयर लगी हुई है।